वाइट कलर के टाइल्स आस पास लगे हुए है वो नजर आ रहे है।

यह एक शॉप है जिसमें बहुत सारी चीजें रखे--

कुछ बच्चे गोल वाले झूले पे झूलते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ चाल है जो नेवी ब्लू कलर के लगे हुए हैं वो नजर आ रहे हैं।

यह एक महिंद्रा की ब्रांच है वह नजर आ रहे--

बहोत सारी कारें खड़ी हुई है वो नजर आ रही है।

मंदिर का गेट नज़र आ रहा हैं सुपाली और खिड़की लगी हुईं है वो नजर आ रही है।

इसमें कुछ थाल रखी हुई है शंकर जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

आधी शटर खुली हुई है और अधि बंद है ओ नजर आ रही है।

एक शॉप है जिसमें मैगी के कुछ पैकेट नजर आ रहे हैं।

कंप्यूटर नजर आ रहा है कुछ सीढ़ियां नजर आ रही हैं।

एक गाय नजर आ रही है बहुत छोटी छोटी सी घास है वो नजर आ रही है।

इंट बनाने की चिमनी नजर आ रही है दूर से एक शांत जल नजर आ रहा है।

एक फैक्ट्री नजर आ रही है जो कि बहुत नदी के उस पार है।

आसपास बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

स्ट्रेट वाली बहुत लंबी इमारत है वो दिखाई दे रही है।

जिसमें तीन गुंबद लगे हुए बहुत सारे लाइटिंग है और बहुत सारी चिड़िया लगी हुई है।

एक मिस्त्री चश्मा लगाया हुआ है तो एक तार पकड़ करके बैठा हुआ है।

एक बोट नजर आ रही है एक बोट जो येलो कलर से है।

और एक बोट जो उसपे कलर दिखाई नहीं दे रहा है वो--

कुछ पौधे अशोक के लगे हुए हैं वह नजर आ रहे हैं।

एक पानी से मगरमच्छ बाहर बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

जमीन नजर आ रही है एक बाल्टी नजर आ रही है।